लाइट्स में कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रीट्स में और सीट्स पर बैठे हुए हैं।

जो बाहर से लोग आते है उनका भी ये फेवरेट है।

दूर वाली जो पज़िशनस है वहाँ पर टेबल चेयर पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

जो अभी लाइट कर दिए गए है लेकिन जो भी यहाँ पे कार्यक्रम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है पूरी सीट्स खाली हैं।

ब्लैक कलर अट्रैक्ट दी मोस्ट --